पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी दिखाई दे रहा है।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

लाइटें बढ़ रही हैं।

एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

रंग-बिरंगी राखिया दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक नाहर दिखाई दे रहा है ।

एक कैमरा दिखाई दे रहा है।

लोहे का गेट दिखाई दे रहा है ।

सीढ़िया दिखाई दे रहा है।

झंडे दिखाई दे रहे हैं ।

टेंट दिखाई दे रहा है।

जिसमें दो लड़के खड़े हैं ।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग नीला दिख रहा है।

किस्म-किस्म के गिलास है झोला है।

बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में रोड दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है ।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

बफर बर्तन दिखाई दे रहा है।

स्टील का लोहा दिखाई दे रहा है ।

गेट दिखाई दे रहा है।

एटी_टी_एम मशीन दिखाई दे रहा है।

कई सारे गाड़ियां दिखाई दे रही है।

एक ब्लू कलर का बिल्डिंग दिख रहा है।

आसमान का रंग नीला है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है।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

बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ।

आदमी और लड़के डांस कर रही है एक मूर्ति दिखाई दे रहा है लाइटें बढ़ रही है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं आसमान दिख रहा है।

झूला दिखाई दे रहा है।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

पर पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

सड़क के किनारे करकट का दुकान है।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

आसमान का रंग नीला है।

साउंड बॉक्स दिख रहा है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है।

टी_वी दिखाई दे रहा है।

ए_सी दिखाई दे रहा है।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

बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है।

ए_सी दिखाई दे रहा है।

लड़के दिखाई दे रहे हैं।

बरस दिखाई दे रहा है।

कई सारे सामान्य दिख रहा है।

वाइट कलर का चटाई बिछा हुआ है।

ब बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ये शर्मा स्टूडियो है।

घर दिखाई दे रहा है।

एस_बी_आई बैंक दिख रहा है।

तस्वीर में सड़क दिखाई दे रहा है गाड़ी दिखाई दे रहा है।

लोहे का गेट दिख रहा है।

करकत दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है ।

कॉपी किताब दिख रहा है।

छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां डांस कर रही है।

बसे से दिखाई दे रही है ।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

सड़क के किनारे गाड़ियां दिख रही हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

स्कूल में बच्चे डांस कर रहे हैं।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

आसमान का कलर काला है।

कई सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।